ये ऊपर रेड कलर की थीम में बना हुआ है। ऊपर इसकी येलो उसमें की रूफ और व्हाइट कलर की रूफ है। ऊपर लाइटें लगी हुई हैं गोल्डन कलर की।

नीचे का फ्लोर मे कुछ गोल्डेन कलर का यहां पर चेयर रखी हुई है जो गोल्डेन कलर की है।

और टेबल है गोल्डन कलर की। हां टेबल का मेन्यू रखा हुआ है। यहां पे आ यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक आदमी खड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड में --

इस इमेज में एक मॉल की इमेज है और उसके राइट साइड में एक साड़ी की दुकान है इसका नाम नीरफ़ निरफ्स है।

और यहां पर खंभे लगे हुए हैं इसका फ्लोर व्हाइट कलर में है और रूफ भी वाइट कलर में है।

यहा पे एक बाउंड्री खींची हुई है जो लोहे की है सामने एक आदमी आ रहा है सामने की ओर और भी सारी दुकाने लगी हुई है।

इस इमेज में एक चर्च की फोटो नजर आ रही है।

इस इमेज में तीन मंदिर के घूमर नजर आ रहे हैं। जो वाइट कलर के है जिनके ऊपर ओम लिखा हुआ है पीछे--

साड़ीयो से गोलाकार बनाए गए इसके अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बाहर की लो लोग कुछ और लोग टहल रहे हैं पीछे एक पेड़ लगा हुआ है बड़ा सा।

इस इमेज में कुछ लड़कियां कुछ बना रही हैं यह एक स्कूल की इमेज है।

बाल्टी भी रखी हुई है यहां पर काफी लोग घूम फिर रहे हैं और यहां बीच में काफी सारी बाईकें खड़ी हुई हैं यहां पर कुछ गद्दे रखे हुए हैं।

आगे की ओर ऑरेंज ब्लैक कोन वाले बैरियर लगे हुए हैं।

बनी हुई है और अंदर गोल्डन कल की लाइट जल रही है।

तसले में कुछ और सामान रखा है ब्लू कलर की बाल्टी रखी हुई है एक।

इस में एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है कलर येलो है और नीचे इसके कु दुकानें बनी हुई है।

साइड से एक पाइप जा रहा है इस वॉकिंग पाथ के ऊपर ग्रीन कलर की रुफ लगी हुई है साइड में बाउंड्री खींची हुई है जो रेड कलर में है और नीचे का फ्लोर भी इसका रेड कलर का है।

बिल्डिंग ब्ल्यू कलर की पट्टी लाइन और व्हाईट कलर बनी हुई है।

पीछे छज्जा लगा हुआ है एक लेफ्ट साइड में कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

के ऊपर मोर पंख है यह पूरा ये पुरा कमरा पिंक कलर में रंगा हुआ है नीचे का फ्लोर रेड कलर में है चेयरे रखी--

पीछे कुछ डंबल रखे हुए है और पीछे बहोत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे--

यहां पर चार से पांच पेट्रोल पंप है पीछे एक कार खड़ी हुई है।

ह यहां पर एक आदमी है जो बाहर है और एक आदमी बस के अंदर चढ़ रहा है। बस के अंदर काफी लोग बैठे हुए हैं।

अ पीछे रेड कलर का पर्दा लगा हुआ है। यहां पे एक टेबल रखी हुई है जिसका कलर रेड और ब्राउन है।

यहां पर नीचे इसके रंग बिरंगी जमीन है।

एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है और पीछे कुछ खंभे लगे हुए हैं।

इमेज में एक कार कि इमेज में दिखाई जा रही है पे दो लोग भी है कार की चारों गेट खुले हुए हैं।

काउंटर के पीछे काफी सारे लोग खड़े हैं काउंटर के पीछे ब्लैक कलर की बहुत सारी चेयर्स लगाई गई हैं।

एक हॉस्पिटल की इमेज है जहां पर काफी बेड रखे हुए हैं यहां पर दो डॉक्टर लोग कुछ ना काम कर रहे हैं यहां पे परदे लगे हुए हैं व्हाइट कलर के।

एक आइसक्रीम शॉट है इसके पीछे एक छोटा पौधा लगा हुआ है पीछे आठ लेकिन जी जी लिखा हुआ है।

के नीचे टेबल रखी हुई हैं दो टेबल है और चेयर रखी हैं जिसका कलर रेड है।

फ्लोर के ऊपर लाइटें लगी हुई हैं और फ्लोर ब्राउन कलर का है।

एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नजर आ रहे हैं एक साइड में बिल्डिंग है उसके ग्लास वॉल लगी हुई है।

उसके पीछे यलो एंड यलो एंड ब्लैक कलर में कुछ दीवार उठाई गई है छोटी सी।

यहां में कुछ लोग घूम फिर रहे हैं और पीछे कुछ बिल्डिंग और बनी हुई हैं। शाम का मौसम हो रहा है ये।

और यहां पर दो एक पंडित जी हैं जो पेड़ पूजा करा रहे हैं। एक आदमी ने--

टूल लगा हुआ है। बग इग दरवाजा लगा हुआ है। यहां पर बाहर की ओर एक आदमी और खड़ा है। अंदर का सीन पूरा गोल्डन कलर में --

पीछे कुछ ओट्स और डब्बे रखे हुए हैं बीच में एक शीशे का ग्लास काउंटर रखा हुआ जिसके अंदर कुछ नमकीने और कुछ सामान रखा हुआ है।

नीचे इस किस अह नीचे इसके इंटों से बन सब बिछा दिया गया है।

यह एक लॉन्ड्री शॉप है जिस लॉन्ड्री शॉप का नाम लॉन्ड्री लैब है।

यहां पे इसका एडवर्टाइज़मेंट हुआ पड़ा है जो पूरा ब्लू कलर के पर्चे ब्लू कलर के पर्चे पे हुआ पड़ा है। इसका गेट ब्लू कलर का है।

इमेज में एक चार्ट का सेलर ठेला नजर आ रहा है।

यहां सामने इसके एक थार में काफी मटर भर के रखे हुए हैं एक आदमी ने।

पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहां पे बीच में एक खंभा लगा हुआ है।

इस दुकान का नाम फ्रॉजेन जंक्शन है औऱ यहाँ पे तीन लोग हैं दो लोग काउंटर के नीचे एक एक आदमी काउंटर के बाहर कुर्सी चेयर पर बैठा हुआ है।

इसकी राइट साइड में कुछ पत्ती सड़के काली हो गई हैं और कुछ येलो हो गई हैं।

आगे सामने का टीन सेट पड़ा हुआ है यहां रेलगाड़ी इमेज पटरी के बीच में कुछ पाइप लगे हुए--

इस इमेज में एक छोटा सा हॉल नजर आ रहा है।

ये पूरा ब्लैक कलर की थीम मे बना हुआ बाहर कुछ और बोर्ड लगे हुए हैं यहां पे काफ़ी सारी बाईकें और कार्स खड़ी हुई हैं।

पीछे बड़ा पेड़ लगा हुआ है उसका पीछे एक रेड कलर के बिल्डिंग और बनी हुई है यहां पर टीन सेट पड़ा हुआ है यहाँ पे एक एंट्रेंस है सामने एम_जी शोरूम के अंदर जिसका ग्लास का दरवाजा लगा हुआ है।

बीच में इसके एक गुंबद टाइप का कुछ बना है एक तोप रखी हुई है।